यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे लोग आ रहे हैं यहां पर कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं।

जिसमें ब्लू कलर का कवर ढका हुआ है।

यहां पर सफेद औ काले रंग की पट्टियाँ दिखाई दे रही है।

यहां पर बोहोत सारी लाइटें जली हुई है लाइट का कलर नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटी-सी पानी की टंकी रखी हुई है।

यहां पर बहोत सारे लोगों के स्टैचू बने हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा तबला दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पेड़ दिखाइ दे रहे है यहाँ पर कुछ छोटे और बड़े पेड़ दिखाइ दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़ासा खंबा दिखाई दे रहा हैं।

चौक के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर किसी की पिक्चर बनी हुई है।

जो येलो और ग्रीन कलर के हैं यहां पर कुछ चेयर्स रखी है।

यहां पर खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

एक इंसान माइक के सामने कुछ बोल रहा है।

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर एक सलून दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर की चेयर्स रखी हुई हैं यहाँ पर एक --

एक आदमी ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर स्टेज का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यहां पर पीले रंग की कुछ पटिया दिखाई दे रही हैं।

यहां पीछे कुछ लोग वर्क आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।